जिसका रंग लाल है और सफेद कलर का है आसमान में नीला एवं सफेद मिक्स से ढका हुआ है नदी के चारों और हरे पेड़ से घिरा हुआ है।

चारों तरफ हरे पेड़ ही पेड़ है आसमान का रंग नीला एवं सफेद मिक्स से ढका हुआ है हिरण का रंग हल्का एवं गोल्डन कलर का है ।

सामने एक छोटा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसके चारो तरफ पेड़ ही पेड़ है एक स्ट्रीट लाइट भी नज़र आ रहा है आसमान का कलर नीला है और सफ़ेद मिक्स है ढ़का हुआ है खूब प्यारा सुंदर है एक दृश्य है।

तस्वीर में एक घर के बाहर बहुत सारा फुव्वारा की किया गया है जिसमें लाइटिंग भी दिख रहा है।

हमें बोहोत बड़ा एक ग्राउंड नज़र आ रहा है ग्राउंड के पीछे बोहोत बड़े बड़े बिलडिंग भी नज़र आ रहा है चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है आसमान नीला एव म सफ़ेद से ढका हुआ हैप्यारा द्रश्य नज़र आ रहा है ।

बिल्डिंग के नीचे बहोत सारे एसीस रखा हुआ है बिल्डिंग मैं कुछ लोग भी दिख रहे हैं आसमान नीला एवं सफ़ेद रंग से ढका हुआ है।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

एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जो हल्का हरा रंग का है जिसमें बहोत सारे पोस्टर लगाया हुआ है ।

सामने एक कंस्ट्रक्शन वाला घर का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ पिलर अभी बन रहा है।

उसके बगल मैं एक भी है | चारो तरह पेड़ ही पेड़ है आसमान नीला एवं सफेत कलर की मेघ से ढ़का हुआ है

एव बहुत सारे पेड़ पोधे भी नज़र आ रहा है | असमान का रंग नीला और सफ़ेद रंग मेग ढका हुआ है।

दूर एक पहाड़ नजर आ रहा है जहां पर बहोत सारे हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।